जिसने टोपी एवं सफेद कोट पहन रखा है और नीचे जींस पहन रखी है और सामने की --

सामने साइकिल मार्ट लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है और एक सफेद कलर की बिल्डिंग बनी हुई है।

राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिकानेर का बोर्ड लगाया हुआ है।

अरे यहां पर कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और यहां पर एक लोहे की रेलिंग का पाइप --

और एक महिला के हाथ में एक थैली--

वे इंजीनियर कॉलेज वडोदरा इंजीनियर कॉलेज बनी हुई है।

और नारीयण पाणी रखे हुए हैं।